एक मॉल है उस मॉल में बहुत सारी चैर दिखाई दे रही है बहुत से लैपटॉप दिखाई दे रहे है एल_ई_डी दिखाई दे रही है मिरर दिखाई दे रहा है।

और जो ब्लॅक कलर के दिखाई दे रहा है कुछ बॉटल दिखाई दे रहे रही है।

ये के पिक्चर दिखाई दे रहा है उस पिक्चर पिक्चर के कुछ डब्बे दिखाई दे रहे है।

आसमान दिखाये दे रहा है जो सफेद निले लाल कलर के दिखाइ दे रहा है नीचे --

एक दुकान दिखाई दे रहा है उस दुकान मे हम्म बडीसी बॉक्स बनी हुई है उन बॉक्सोमे किताबे रखी हुई है।

कुछ ब्लू कलर के कुछ निले कलर के बादल दिखाई दे रहे है कुछ रिक्षा खड़े हुए है और कुछ लोग खड़े है।